यहाँ पे ट्रक होएंगा ट्रक के पीछे मिक्सिंग वाली मशीन लगायी हुई है जिसके कारन--

ये रेस्टोरेंट खोल रखा है| खुला एरिया है।

घाटी की तह की तरह नज़र आ रहे है यहाँ पर पेड़ भी है बड़े-बड़े पत्थर यहाँ पे रखे है--

रखी हुई है यहाँ पर नैपकिन और उसका रु उ रूमाल भी पड़ा है।

यह एक शोरूम के अंदर का दृस्य है दृस्य है।

माटी का टिल्ला दिखाई दे रहा है इस टिल्ले के पास में--

कुछ आकरे के पेड़ भी लगे हुए नजर नज़र आ रहै है।

कपड़ेओ को बांधते हुए नजर आ रहा है पल्लू से।